यहाँ पे एक पुराना -सा मकान है और ये बहुत ही राजा -महाराजा क का समय का पुराना मकान लग रहा हैं ।

यहां पे फोटो खींचा आ रहा है चश्मा भी पहना हुआ है और यह हो सकता है तो मस्जिद है बगल में जैसा लग रहा है।

यहाँ कोई कोचिंग सेंटर है यहाँ टेबल -वेबल लगा हुआ है और बैठने के लिए चेयर कुर्सी लगा हुआ है और एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ हैं ।

जहाँ बहुत अच्छे किसी ने धर्म का काम किया है मानवता का परिचय दिया है किसी ने --

यहाँ कुछ मंदिर वंदिर हैं या --

रोड जैसे भी बनाए गए हैं और पीछे घना जंगल है बहुत इधर पेड़ पौधा दिख रहा है जंगल जैसे है।

सामने बहुत सारी गाड़ी दिख रहै हैं मोटरसाइकल --

यहाँ पुस्कालय हैं जिसेको इंग्लिश में बेलीवर बिलिबिया लाइब्रेरी बोलते हैं अउ यहाँ बहुत सारे बुक रहते हैं।

जहां जाकर लोग पढ़ सकते हैं और एक हाता लगा हुआ है इधर एक मोटरसाइकिल भी है।

यह कोई मंदिर-उंदीर है और यहाँ पे बहुत सारे --

वो निकालते है और खाते है और इस को सारस कोकड़ा बोलते है।

यहां लोहा का बना हुआ गेट है जिसको हम महाराजा गेट के नाम से जानते हैं और यह गेट बहुत ही होजन रहता है।

यह एक कुछ मैदान है और रोड है कुछ पार्क वार्क गार्डन का जैसे लग रहा है और यहाँ पानी का पीने के लिए कुछ पाइप वाइप भी लगा हुआ है।

पकड़े हैं आग का और बहुत सारे लोग यहां एकत्रित हैं।

और यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लगा हुआ है और गुब्बारो से यह दुकान खोदाया गया है और यह गुब्बारा का कलर है कोई--